सांड वगेरा भी है और यहाँ पे कबूतर भी है और उनके लिए कुछ खाने के लिए यहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई है।

एक लैब सी ट्यूशन क्लाससेस लग रही है और पर पोर्शन बाई पोर्शन ऊपर की ड्रॉ बनी हुई है पर और यहाँ पर विंडो वगर भी है और उस पर कर्टर्स भी पड़े हुए है ।

और बहुत सारे लोग है यहाँ पे यहां पर।

और ईट पथर स बना हुआ है कुछ लिखा हुआ भी है काफी बड़े बड़े पत्थर पड़े है।

ये एक गाय है यहाँ पे रहती है गाय बंधी हुई है बहुत सारी घास वगेरा पड़ी है मिटी फीति पड़ी है विन्डो बनी हुई है ऊपर पड़ी हुई है।